और उसके पास एक बिजली का खंभा है।

सामने काउंटर पे कुछ पानी की बॉटल्स दिख रही है।

मेरे सामने जो पिक्चर दिख रही है।

एक डोर है जिसके पास एक डस्टबीन पड़ा हुआ--

ये एक डॉक्टर की शॉप लग रही है जहां--

इस पिक्चर में फ्लोर दिख रहा है।

काउंटर के ऊपर डिब्बों में बहुत सारी खाने पीने की चीजें रखी हुई सामने एक आदमी खड़ा है।